इस तस्वीर में मुझे नजर आ रहा है कि एक दो मंजिल की इमारत है जिसके आगे दो तीन बंदे खड़े हैं और --

एक रेल की पटरी दिखाई दे रही है जिस पर एक रेल स्टैंड पे खड़ा हुआ है।

बड़े बड़े झूले लगे है और ये देखने में बहुत ही सुंदर नजरिया है।